लोखंड का गेट है। लोखंड के गेट को ब्लू कलर दिया है। वहाँ पे एक बैनर लगाया है।

यह एक कृष्ण की मूर्ति है। वो प्लास्टिक में पैक है। कृष्णा के हाथ में स्टोन की चूड़ियाँ है।

यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। गेट सजाया हुआ है। पर्दे भी लगाए हुए है। फ्लावर्स भी लगाए हुए है।

कुछ आदमी वहाँ पर खड़े दिख रहे हैं रोड पर ऑटो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहा है और वायर भी दिखाई दे रहे हैं।

सोफा दिखाई दे रहा है दो चेयर हैं और एक कम्बाइन्ड सोफा है।

एयरपोर्ट है वहाँ पे एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है।

एक किसी का हाथ दिखाई दे रहा है उसके हाथ मे अ उसने एक वो फूल पकड़ा है फूल का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।